देसी मछली बिक रहा है।

दो मंजिला घर है|

चार मंजिला बिल्डिंग है बाउंड्री भरा हुआ है सीट से।

यह घर है घर में काम चल रहा है।